यह तस्वीर एक मन्दिर की दिखाई पड़ रही है जिसमें सामने की तरफ दीवार के उपर कुछ पंक्तियां लिखी हुई हैं।

कुर्सियां अलग अलग रंगों की है टेबल लकड़ी और धातु से बने हुए हैं रोशनी अच्छी है।

यह तस्वीर एक कमरे की है कमरे में एक बिस्तर एक छोटी मेज और एक अलमारी है।

मकान के दीवार का रंग पीला है एवं पिलर का कलर नीला दिखाई दे रहा है।

इसमें एक बच्चा व्यक्ति के पास खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

जमीन पे कुछ औजार जो कि मोटरसाइकिल को रिपेयर करने के काम में आते हैं वे बिखरें हुए हैं।

इस तस्वीर में अच्छी रोशनी है क्योंकि ये दिन में ली गई है।

यह तस्वीर एक जन्मदिन की पार्टी की आयोजन स्थल की है मंच को लाल और सफेद गुब्बारे से सजाया गया है।

चाय और कॉफी बनाने के लिए कुछ उपकरण और सामग्री रखी हुई है।

तस्वीर में दिख रहा वन चित्र शानत्र और शांत और सुंदर --

मंदिर के सामने सीढ़ियां हैं और दोनों तरफ चबूतरे बने हुए हैं।